और इसके आगे अगल-बगल में मतलब आगे हरा-भरा पेड़ लगा हुआ है फुल बिछी हुई है।

ये देखिए यह एक स्कूल है बहोत बड़ा यह स्कूल है इंटरनेशनल स्कूल है।